फिर से उसका अ-अ हट जैसा व्यू है।

रोड के साइड में कुछ मकान बने हुए हैं।

बिल्डिंग के ऊपर का शेप झोपडी जैसा है।

साइड में काफी सारे लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे है।